वाइट कलर का मार्क्स लगाया हुआ है स्विचबोर्ड है।

रूम है रूम का कलर वाइट है फर्श वाइट है कैमरा लगा हुआ है कैमरे का कलर वाइट है।

हॉस्पिटल है कलर वाइट है बॉर्डर ब्राउन है बोर्ड है।

वाइट है पर्पल है काउंटर का कलर वाइट है।

एक आदमी है ब्लैक कलर का फूल शर्ट पहना है।

पोस्टर है पोस्टर का कलर ब्लैक है येलो कलर का कार बना हुआ है।

दुकान के बाहर दो लड़के हैं एक लड़का वाइट कलर का टी-शर्ट पहना है ब्राउन कलर का लोअर है।

एक औरत है बैठी हुई है रेड कलर का साड़ी पहनी है।

घर के बाहर कार है कार का कलर वाइट है।

डब्बो का कलर रेड है ब्लू है।

चेयर का कलर ग्रीन है येलो है बेंच का ब्लू है रेड है।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

नीला है पर्पल है ग्रीन है रेड है।

हॉस्पिटल रूम है पर्दे का कलर नीला है एक लेडीज है पिंक कलर का साड़ी पहनी है।

कलर ब्राउन है चेयर है चेयर का कलर ब्राउन है।

चेयर पे बैग रखा हुआ है कलर ब्लैक है पोस्टर लगा हुआ है।

मेरून है ब्लू है घर के बाहर एक लड़की है येलो कलर का सूट पहनी है।

रुम है रुम का कलर ब्राउन है वाइट है पर्दा ब्राउन है।

रूम है रूम का कलर पिंक है दरवाजे का ब्राउन है बहुत सारे काउंटर लगे हुए हैं।

बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठी हुई हैं बैग है।

कलर ग्रे है फर्श का कलर रेड है भगवान का फोटो है।

बहुत सारे डेक्स लगे हुए हैं कलर ब्राउन है।

लाइट ब्राउन है डस्टबीन है कलर --

ग्रीन है एक लड़का है येलो कलर का बैग लिया हुआ है।

क्लासरूम है क्लासरूम का कलर ब्राउन है फर्श पे बहोत सारे बैग हैं बैग का कलर ग्रे है ब्लॅक है।

जिम रूम है रुम का कलर वाइट है रेड है कारपेट का कलर रेड और ब्लैक है।

है कलर रेड है दुकान के बाहर बाइक है स्कूटी है।

काउंटर है काउंटर का कलर ब्राउन है शीशे के अंदर--

कलर ब्लू है ग्रीन है ब्राउन है।

क्लास रूम है कलर व्हाइट है फर्श का ग्रे है ब्लैक बोर्ड है कलर ग्रीन है।

येलो है पिंक है बहुत सारे डेक्स बेंच है।

कलर ब्राउन है बहुत सारे लोग बैठे हैं।

पार्क है बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं बेंच का कलर नीला है ब्राउन है ब्लैक है।

ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना है ग्रीन कलर का पैंट है।